यहाँ पे एक रेस्ट्रोरेंट है ज -- जिसपे बहुत सारे वाईट और पिंक बैलून लगे हुए है वाल्स पे फैन है। पत्थर लगे हुए है।

और चेयर यलो रेड ब्लू टेबल है टेबल पे दो बोटल रखी हुई है और ग्रिल दिख रही है स्टेअर दिख रहा है।

और यहाँ पे कुछ लोग हैं एक अंकल हैं और कुछ लोग हैं जो कि इसके किनारे पे खड़े हैं। किनारे पे झाड़ियाँ हैं हरी-भरी और स्टेयर्स भी बनी हुई हैं।

पेड़ हैं। खजूर के पेड़ हैं लम्बे-लम्बे और नीचे घास हैं पौधे हैं।